ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह किसी प्रोग्राम के लिए लगाया गया हो यह स्पीकर देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे की इसकी आवाज की शक्ति बोहोत ही ज्यादा हो यहाँ पे घर भी दिख रहा है।

इसमे हमें कई नोटिस और कई इम्पॉर्टन्ट चीजें चिपकाई हुई नजर आ रही हैं यहाँ पे कुर्सियाँ टेबल हैं।

एक पार्क का है यहाँ पे रास्ता बोहोत ही खूबसूरत बनाया गया है ईंटों से साथ ही साथ यहाँ पे दोनों तरफ हमे कई पेड़-पौधे देखने को मिल रहे है ये सारे पौधे बहुत--

इस दृश्य मे हमे एक रेसिंग कांम्पिटिशन होते हुए दिखाई दे रहा है यह पर हमे तीन बच्चे दौड़ते हुए नजर आ रह है यहाँ --

एक व्यक्ति ने हेलमेट पकड़ रखा है और एक व्यक्ति अपने कमर पे हाथ रख के खडा़ हुआ है।